रखे जाते है और जिससे मच्छियां बड़ी हो जाती है तो इनसे व्यापार किया जाता है।

बिल्कुल ही लाल लाल दिखाई दे रहा--

यहां पर सतलुज और व्यास का संगम होता--

लोग यहां खाना खाने आते हैं।

मीटर भी अलग से लगा हुआ है।

आकर प्रेयर करते हैं और अपनी विश मांगते हैं।

स्वरूप रखा गया है बहोत ही आकर्षित सबको कर रही है।

यह एक साहिल स्टूडियो है जहां पर कैमरे ऑन --

इसको बहोत ही गुब्बारों के साथ सजाया गया है।

बहुत ही सुंदर दुकान लग रही है।

व्यक्ति काफी खास प्रबंध किया गया हैं।

और ग्लाइनो मे लड़कियां भी बैठी है।

एग्जाम देने आए हुए हैं बच्चे सामने देख रहे हैं।

अंडर गारमेंट्स की ये एक शॉप है यहां पर लेस रेटो पे सारा सामान मिल जाता है।

यह ड्रेसिंग एरिया बहोत ही सुंदर है मिरर बहोत अच्छे तरीके से लगाया गया है।